यहाँ पर एक बहोत बड़ा पुलियाँ दिखाई दे रहा है इसके नीचे एक बहोत बड़ी नदी दिखाई दे रही है जोकि बहोत सुंदर नजारा दिखाई दे रहा हैं।

यहाँ एक जगह है आसपास बहोत सारे पेड-़ पौधे दिखाई दे रहे है और यहाँ पर बहोत सारी हरियाली दिखाई दे रही हैं।

यहाँ एक जगह है जहाँ पर बहुत सारी मूर्तियां रखी हुई दिखाई दे रही है यहाँ अलग-अलग कलर में दिखाई दे रही हैं।

पीछे दीवार दिखाई दे रही है जोकि नीले कलर में दिखाई रही है और यह जगह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही हैं।

और यहाँ जगह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है रास्ता में बहुत सारी बस दिखाई दे रही है सफ़ेद और लाल कलर की दिखाई दे रही है आस-पास कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं दिखाई दे रहा है।

आसपास बस और बहुत सारे ऑटो भी दिखाई दे रहा है और ये जगह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है।

यह एक जगह है यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े घर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारी बस दिखाई दे रही है।

यहाँ एक जगह है जिसके आस-पास बहुत सारे पेड़- पौधे और बहुत सारी हरियाली दिखाई दे रही है।